स्टेशनरी में जैसे बुक कॉफी वगैरा और काफी सारा सामान इन्होंने जनरल स्टोर का सामान भी भर के रखा है शॉप के अंदर--

और एक पहेला चाय भी दिखाई दे रहा है ये सब शॉप और कंपनियो के नेम हैं जोकि सामने हैं और वो दिखाई दे रहे--

इसमें डोनर फैक्ट्री जो है वो येलो कलर की दिखाई दे रही--

मुझे सामने एक लड़की दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डांस की प्रैक्टिस कर रही थी या फिर वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही थी।

मुझे सामने डेकोरेटिव वाला मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है शायद ही मंदिर है काफी ज्यादा डेकोरेशन किया गया है।

घर के आस पास भी कोई नहीं है और घर काफी सुंदर सजा हुआ डेकोरेटिव दिखाई दे रही है।

पीछे साइड में पेड़ काफी ज्यादा लगे हुए हैं ग्राउंड जो है काफी हरा भरा है उसमें लोग भी खड़े हैं।

शायद यहां कोई प्रोग्राम होने वाला है उसकी तै उसकी तैयारी चल रही है।

यह आदमी ने पीले कलर की शर्ट पहनी है औरत ने पिंक कलर की टी शर्ट --

सामने कैनरा बैंक का ए_टी_एम और बैंक दिखाई दे रहा है गा जो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रहेगा।

सामने माता रानी का पंडाल दिख रहा है जो कि बहोत सुंदर सजा हुआ दिखाई दे रहा है माता रानी की मु मूर्ति एकदम अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है।

और कुछ वो बच्चे हैं जो कि अभी भी अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं।

फ्रिज और ये पानी का जो लू लुक दिखाई दे रहा है वो काफी सुंदर दिखाई दे रहा --

मुझे सामने एक गुलाब फूल उद्यान दिखाई दे रहा है यहां पे काफी ज्यादे फूल लगे हुए हैं।

और ये कार जो है ये किसी के घर के बाहर खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो की--

साइड की दिवाल जो है वो अलग ब्राउन कलर के दिखाई दे रही है ऊपर का जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का है इसमें काफी ज्यादा फैन लगे हुए --